यह एक कमरा है कमरा का रंग सफेद कलर का है नीचे जमीन पर फ़र्श पर राम सीता का तस्वीर बनाया हुआ है।

ये एक सब्जी दुकानदार है यह दुकानदार ने बंद-गोभी बंद-गोभी केला प्याज और अनार संतरा नींबू बहुत तरह-तरह के आईटम ये जो बेच रहे है।

ये पंडाल बहुत ही सुन्दर और ये रंगबिरंगा दिखने मे बहुत आकर्षक है।

ये एक पर्वत है पर्वत के ऊपर कुआसा छाया हुआ है और उसके सामने खुला पेड़ दिख रहा है।

यह एक गोदाम है इसमें बहुत सारा गोदाम में गोदाम में भरा हुआ अनाज है इस अनाज का अम बोरा का रंग--